टाइल्स दिख रही है पत्थर की।

यहां पे बच्चे अपने हाथों की ड्राइंग बनाए हुए हैं।

बहोत अच्छा दिख रहा है सब कुछ--

यहां पे लोग घूमने जाते है।

कोई तीन सौ पचपन का कोई तीन सौ पछतर का है।

और घर भी बने हुए हैं दो तीन।

यहां पे बेतवा नर्सरी दिखा रहा है।

यहां पर लड़कियां कुंग फू कराटे की प्रैक्टिस कर रही हैं मार्शल आर्ट की तैयारी कर रही हैं।

यहां एक पंखा लगा हुआ दीवारों में--

ये कोई घर है जहां शायद कोई कार्यक्रम हो रहा है।

और यहां पे नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा हुआ हैं।

यहां पे टीचर पढ़ा रहे हैं कोई सा सब्जेक्ट ।

सभी बहोत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं।

इस पिक्चर में नेता आये हुए हैं।

कोई फेस्टिवल है या ओकेज़न है।

जिसमें फूल है स्पीच दे रहे हैं और सभी बड़े ध्यान से सुन रहे--

ये एक मंदिर है। जहां पत्थर की टाइल्स लगी हुई है ये बहोत पुराना मंदिर दिख रहा है।

यहां कोई लोग नहीं दिख रहे हैं।

ये ऊपर का एरिया है घर के--

अभी तो जिम में कोई नहीं है।

यहां पे बहोत सीढ़ीओ को चढ़के जाना पड़ता है।

दो तीन पंखे लगे हुए हैं यहां पे--

ये टेबल टेनिस का क्लब है।